मुझे इस फोटो में बहोत सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में बहुत सारे अंडे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे कुरकुरे चिप्स नमकीन दिखाई दे रही है मुझे इस --